ये एक रेलवे टेशन है जिसके में काफी सारी रेल की पटलियाँ हैं। रेलवे ट्रैक पर रेल नही है। और --

ये एक मैदान है जिसपर व्यक्ति क्रिकेट खेल रहे हैं।

यह एक दुकान हैं। दुकान पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ हैं काफी राज रचना फ्रूटी ठंडाई की बोतले --

यह एक शॉप है। जिस पर लेडिज का सभी सामान रखा हुआ है।

अम एक सड़क जा रही है जिसके सामने एक मंदिर है मंदिर का गेट लाल कलर का लोहे का है अंदर मंदिर के ऊपर दो माइक --

लगे हुए हैं। एक बड़का पेड़ लगा हुआ है ओ और काफी सारे पेड़ और भी लगे हुए --